बैनर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर रेलिंग्स लगी है। शॉप के अंदर कई सारी लाइट्स जल रही है।

साइड से दिवार के दिवार साइड - साइड पर हमें --

कुछ गोलाकार आकृति में बनी हुई डिज़ाइन्स पत्थरस् के दिखाई दे रहे हैं और ऊपर रेलिंग्स दिखाई दे रही हैं।

और हेलमेट भी दिखाई दे रहा है और दुरी पर काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं और जलते हुए अगरबत्तियाँ ओ जलता हुआ दीपक भी दिखाई दे रहा है और एक थाल दो थाल में पुष्प भी रखे हुए हैं।